उसके बाद मल्टी दिख रहा है इसके बाद लाइट लगी हुई हैं

गुरुदेव की समाधि बनी हुई है उस पे माला चढ़ी गई है एक ब्लैक है।